इसी तरह में एक अ मैदान है फुटबॉल मैदान फुटबॉल मैदान के बाजू में एक कार पार्क की गई है और कार के पीछे एक स्टैंड्स भी दिखाई दे रहा है जिसकी--

और उसके बाजू में एक स्विच भी है --

ये योगा में एक टीचर भी दिखाई दे रही--

मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है और बाजू में एक बस भी नजर आ रही है रेड कलर ऑरेंज कलर ।

ये पिक्चर कोई कैफै का लग रहा है --